जिसमें खेल घर है टॉय किंगडम है मेडिकेयर है ।

उसके सामने चार गाड़ियां खड़ी हैं।

बड़े बड़े खिड़की हैं।

एक फाउंटेन है पीछे पहाड़ है हरी जमीन है।

बहुत सारे लोग ब्लू पहने हुए हैं।

इस दृश्य में एक कार दिख रही है।

यह गैराज है पीछे पेड़ दिख रही है।

जहां प कुछ पेड़ है।

वाइट गेट है आसमान नीला है।

गाड़ी की चाबी है।

एक पुल दिख रहा है जो कि लोहे का है।

सी दृश्य मे कुछ गमले हैं कुछ बैलून है गेंदा का फूल है ।

टावर है हरे हरे पौधे हैं।

इस दृश्य में एक होटल है कुछ बैलून है बैलून लाल है ।

कुछ गाड़ियां हैं दो कुर्सी हैं।

एक आदमी हैं कुछ किताबें हैं।